गांव शहर सभी स्थान पर सब्जी मंडी होते है।

सिनेमा हमारे जीवन में बोहोत सारा प्रभाव डालती है।

कहीं यहाँ कहीं अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है जिनमें शामिल हैं मांसपेशियों को मजबूत बनाना ह्र्दय प्रणाली को सुद्रुढ बनाना और वजन घटाना या फिर आनंद लेने के लिए|

इस कक्ष में प्रत्येक महिलाएं योग कर रही है।